स्लाइड के साइड में कुछ लेडिजे खड़ी हुई हैं। ब्लू कलर के यहाँ पर साइड में कुछ बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है। .

गेट बंद दिख रहा है। मंदिर के सामने कुछ छोटे गुलदस्ते रखे गुलदस्ते में भी पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ बोहोत सारे बैरिकेटर भी रखे हुए हैं। टीन शेड के नीचे।

साइड में बहोत सारे लोग है पलेन के अंदर बहोत सारी खिड़कियां दिख रही हैं।

यहां पे एक आदमी कुछ बैग टांगे हुए जुते के लेस बांध रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है। .

यह एक अ मंदिर दिख रहा है। मंदिर में यहाँ कुंडिया रखी हुई हैं। गमले --

यहाँ एक मस्जिद है मस्जिद वाइट कलर की दिख रही है इसमें कुछ गोल्डन कलर भी हैं।

यहां एक मंदिर हैं। मंदिर में सामने गणेश जी की मूर्ति दिख रही हैं। यहां साइड में दो लेडीज़ दिख रही हैं। एक लेडीज़ ने ग्रीन कलर की साड़ी पहन रखी है।

भी बोहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ एक स्टैचू ने रेड कलर के टी-शर्ट और ब्लू कलर का --